यहां पे कुछ लोग भी हैं।

एक पीले रंग का मकान भी है।

यहां पर लाइटें भी जल रही है।

यहां पर दो ठो सफेद रंग का शटर भी लगा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे पंखे भी लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे लोग भी हैं।

यहां पर पिंक और ब्ल्यू रंग के कपड़े से गेट भी बनाया हुआ है।

यहां पर सामने बहुत सारी बिस्तर भी लगी हुई है।

यहां पर बहोत सारी खिड़कियां भी है।

सामने एक बड़ा सा घर भी है जिसमें खिड़कियाँ और दरवाजे भी हैं।

ऊपर एक कपड़े का टेंट जैसा बनाया गया है।

मकान के बगल में एक दुकान का शेटर भी लगा हुआ है इस शेटर का रंग ब्राउन है।

यहां पे बहुत सारी गाड़ियां भी लगी हुई है ।

यहां पर कुछ लोग भी हैं।

यहां पे बहोत सारा रेक भी बना हुआ है।

यहां पर बहोत सारा बैठने वाला जगह भी बनाया हुआ है।

इसपे बहुत सारी मरी हुई झींगा मछलियों को रखा गया है।

इस गैराज का रंग सफेद है।

यहां पर लाइटें भी जल रही हैं।

यहां पर कुछ लोग भी खड़े हैं।

यह तस्वीर एक बस स्टैंड की है।

यहां पर बहोत सारी लाइटें भी जल रही हैं।

सड़क के अगल बगल बहोत सारी दुकानें भी है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुएं हैं।

यहां पर दो आदमी लाल कलर का कपड़ा और ऑरेंज रंग का टोपी पहने भाला लिए हुए खड़े हैं।

यहां पर सामने एक ग्राउंड भी है।

यहां पर बहुत सारी घास भी उगी हुई है।

पौधों में बहुत सारे ऑरेंज और येलो रंग के फूल भी लगे हुवे हैं।

बगल में एक बड़ा सा पेड़ भी है।

यह तस्वीर एक होटल की है।

कुर्सियों का रंग काला लाल और ब्लू है।

वहां पे एक शीशा भी लगा हुआ है।